सब आपस में बइठ के कुछ के काम करत ह। खाना बनवाल खाए पिए सब करत ह।

बहुत सुंदर गेट बा भैया गेट पर बहुत सुन्दर सजावट बा बहुत सुन्दर लगत बा झालर बत्ती बा बिल्डिंग सजल बा शादी वादी का पंडाल लगल बा शायद |

अच्छा लगत बा। साफ़-सफाई बहुत बढ़ियां बा। सुन्दर दिखत ह ।

एक ते मूर्ति के दुकान बा भैया जहाँ हर तरह का मूर्त बिकेला चाँदी का सोने का पीतल का ताम्बा का सब तरह का मूर्ति यहाँ बिकेला भैया बहुत सुन्दर हैं। ये मूर्ति का दुकान लगादो आप पीछे डिजाइन बढ़िया बा।

लोग आवेलन अपना मनपसंद लेके निकालके लेके जाना --